महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही है सारी महिलाएं योग अभ्यास करते हुए तथा योग करते हुए दिखाई दे रही है।

यहां एक शादी इवेंट का फोटो दिखाई दे रहा है इस इवेंट के बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही--

और कुछ ईंटे सड़क पे बिखरी हुई पड़ी हुई है सामने एक पानी की बॉटल रखी हुई है युवक अपने स्कोप में कुछ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन बालिकाओं ने पीले कलर की टी शर्ट पहन रखी है तथा एक बालिका ने लाल कलर की टी शर्ट पहन रखी है चारों बालिकाएं तेज गति से दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं।

बस काले कलर की दिखाई दे रही है और बस के आसपास कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक नदी दिखाई दे रही हैं जिसमें एक नांव दिखाई दे रही हैं नांव के पास दो युवक खडे दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक डेयरी फार्म दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बस्तर डेरी फार्म भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर।

कुछ महिलाएं बैलून खरीद रही है यहां पर बैलून रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं और गेट पूरा लाइटो से सजा हुआ दिख रहा है।

ये शॉप पुरी लाइटों से सजी हुई है और यहां पे पिज्जा और बर्गर के फोटो लगे हुए हैं और बाहर कुछ लाइटें लगी हुई है।

और एक नर्स साइड में खड़ी हुई है डॉक्टर पेशेंट के दांत देख रहे हैं।

यहाँ कुछ दिखाई दे रही है और पंखा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का हॉल दिखाई दे रहा है।

हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और एक खुला खुला मैदान दिखाई दे रहा है अलग अलग--

यहां एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है यहां अनेक प्रकार की शर्ट एवं टी शर्ट दिखाई दे रही है।

यहां पर मकान का काम चल रहा है। यहां पे इट सीमेंट सरिये रखे हुए हैं। कुछ लोग यहां पर काम कर रहे हैं।

यहा का बड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है इस हॉल पे एक तस्बीर लगी हुई है उस तस्बीर पे लिखा हुआ है रेडिओ लोजी इस द आई ऑफ़ कैन--